ये एक स्टैचू की दुकान है जहां पे सुंदर-सुंदर स्टैचू बनवाई जाती है।

ये होटेल सम्राट है जो कि बहोत ही बड़ा और सुंदर होटेल है ।

''ये आकाश बायजुस गया सेंटर है जहां पे ऐठ टू ट्वेल्थ और जे.ई . नीट की तैयारी करवाई जाती है।''

और डांस मास्टर जो है लोगों को डांस भी सिखाते हैं अलग-अलग तरह।

ये एक जिम है जहां पे बहोत सारे वर्कआउट मशीन्स रखे हुए हैं ।

और इस होटल में ए.सी. नॉन ए.सी. रूम्स भी अवेलेबल है और सारे रूम बहुत क्लीन रहते है।

यहाँ पर लोग हर रोज आकर एक्सरसाइज वर्कआउट और --

योगा करते है और खुद को फीट और हेल्दी रखते है।

यहां पे हनुमान जी की मूर्ति बनाई गयी है जो राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठाए हुए है।